ब्लू कलर की और दूसरी ब्लू कलर की जिसपे ब्लैक कलर का शेड है तीसरी ब्लू कलर की जिसपे व्हाइट कलर का शेड कुछ लोग यहाँ खड़े हुए है।

लिखा हुआ है रेड कलर से और यहाँ पे एक फ्लैग अ झंडा लगा हुआ है।

-- है यहाँ पे एक बिल्डिंग बनी है जिसपे हिंदी में शासकीय लोचन प्रसाद पांडे महाविद्यालय रायगढ़ जिला--

हम देख रहे है यहाँ पे सिंगल रूम है जो की यहाँ पे चेयर रखी हुई है।

और यहाँ पे जंगल टाइप बना हुआ है और ऊपर साइड एक चट्टान बनी हुई है और यहाँ पे छोटी छोटी चट्टान बनी हुई है।

यहाँ पे एक काउच रखा हुआ है लेफ्ट साइड पे एक व्हाइट चेयर और एक राइट साइड पे एक व्हाइट चेयर रखी हुई है।

यहाँ पे एक मीटिंग चल रही है यहां उसके पीछे एक स्टील बना हुआ है।

और उस पे डिकोड ग्राउन लिखा हुआ है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे बैनर लगा हुआ है जिसपे बी. एम. डब्ल्यू. लिखा हुआ है और कुछ लोग यहाँ पे टेबल पे बैठे हुए है।